तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है| यहाँ पे हमें कुछ स्पीकर दिखाई दे रहे है| मंदिर का गेट बंद दिखाई दे रहा है| यहां पे हमें सीढियाँ दिखाई दे रही हैं।

मंदिर मे बहोत सारी लाइटन की गई हैं। यहाँ पे भी रात का समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमे एक झंडा दिखाई दे रहा है। अंदर हमे कुछ परदे जैसा दिखाई दे रहा है। बाहर हमे एक रोड दिखाई दे रही है |

ये कुछ बच्चा का फौजी की ड्रेस पहने दिखाई दे रहे हैं। हाथ मे झंडा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें बोहोत सारे वर्कर दिखाई दे रहे है जिन लोगो ने मास्क पहना दिखाई दे रहा हैं। ऊपर हमें हेलमेट भी पहना दिखाई दे रहा हैं। यहाँ पे हमें लोगो की ड्रेस का रंग में --

दिखाई दे रहे है अंदर हमें पहले से कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है। बस का रंग हमें काला दिखाई दे रहा है। इसके टायर दिखाई दे रहे है। दरवाजा दिखाई दे रहा है। बाहर हमे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है। सड़क दिखाई दे रहा हैं। आस पास झाड़ पौधे दिखाई दे रहे है।